इस पर बड़ी बड़ी अक्षरों में दवाइयां लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में विनायक स्टूडियो एंड कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

ये चित्र किसी मेले का है मेले की दुकान में अ ये कॉस्मेटिक की दुकान का चित्र है।

उस जाल के पीछे जंगल दिखाई दे रहा है।

इसके दोनों साइड मोटरसाइकिले खड़ी है एक व्यक्ति बैंक के पास में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बीच में एक बैठने के लिए एक लाल रंग की झोपड़ी बनाई हुई है।